काफ़ी सारे है जो ब्लैक कलर और ग्रे कलर के सफेद रंग के नजर आ रहे है काफी बड़े हरे कृष्णा हरे आसमान भी साफ़ दिखाई दे रहा है।

कोई वहां पर आ कुछ आ हरे पेड़ वहां पर नजर आ रहा है और कोंपौनदिङ हे जो रेड कलर का नजर आ रहा है और वही आसमान जो हे साफ दिखा गीला है काफी अच्छा एजुकेशन नजर आ रहा है।